और यहाँ पे कुछो टेबुल पर रक्खल है क्रीम है --

सब दूरी बना के खड़ा है सब मास्क पहना है।

बच्चा सब बड़का पेपर पर कुछ बना रहा है।

सब कर्मचारी एके जैसा कपड़ा पहने है।

पानी गिरता है इसमें से थोड़ा-थोड़ा।

इतना तो लोग रेंट पे लगाके रखता है।

कैसे वो जर देखने म लग रहा है।

पेड़ सब भी पौधा-आर भी है।

एगो आदमी कसरत कर रहा है यहाँ पे।

कौन पेड़ है उ ने पता।